इस में बॉडी व्याम के लिए बहोत कुछ--

इस फोटो में कोई एक गेट दिखाया गया है।

और चार आदमी दिखाए गए हैं एक बाइक दिखाई गई है।

दुकान की दिखाई गयी है जिसमे दो व्यक्ति बैठे है और इनका किताब--

और स्टडी मटेरियल बहुत अच्छा रखा है इन्होने।

और यहाँ पर कुछ लोग प्रवचन वगैरह कर रहे है।

और पेंटिंग बहुत अच्छी की गयी है।

और फोटो चित्र बहुत अच्छे लगाए गए है।

और काफी सुथरा काम है यहाँ पर--

देखने में यह गौशाला की फोटो लग रही है इसमें लिखा हुआ है--

बर्गर और खाने पिने की चीज़ो का काम किया गया है।

ब्लैक कलर से इसमें गेट पर--

जिसमे तीन विद्यार्थी परीक्षा दे रहे है।

एक लाल रंग की पानी की बोतल है।

जिसमे बहुत सारी टॉक्सिस खड़ी है।

कुछ टॉक्सिस काले और पिले कलर में है।

इसमें फुटबॉल वगैरह भी पड़े है।

एक मकान बना हुआ है।

एक आदमी ने पिले रंग की टीशर्ट पहनी हुई है।

यह फोटो कोई वर्कशॉप की है।

दो पिले रंग की पटिया बनीहुई है फर्श में।

और एक खडा जैसा दिखाई दे रहा है।

यह फोटो एक वर्कशॉप की है।

जिसमे शिक्षक पढ़ा रहा है।

यह फोटो एक जे_सी_बी की है।

तो बैठ ने के लिए बेंच बनाई है।

और पेड़ पौधे हरयाली बहुत--

जिस ने बहोत सारे प्रोडक्ट पड़े है।

फोटो में एक मिस्त्री दिखाया गया है जो कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है।

यह एक संस्था स्कूल या कॉलेज का फोटो है।

जिसमे बहोत सारे लोग एक कतार में खड़े है।

और एक जहा खड़ा हुआ है जिसमे स्पेन --

एक राउंड टेबल है जिस पर बैग पड़ा है धन्यवाद।

एक आदमी को दिखाया गया है जिसने अपने हेयर कट बनवाए है।

इसमें बहोत सारी मोटले भी है और साथ में एक--

इसमें जिम के इम्प्लीमेंट्स दिखाई गए है।

जिसने बाल खड़ी कर रखी है ब्लैक कलर की--

यह है फोटो एक जिम इम्प्लिमेंट्स की है।

जिसमे एक तीन भैंस एक छोटी भैंस दिखाई दे रही है।

लाइट जल रही है परदा लगा हुआ है थैंक यू ।

जिसमे एक ने ब्लैक कलर की टीशर्ट पहन रखी है।

साइकिल दिखाई दे रही है।

और उन पिंक कलर हो रखा है।

सामने परदे लगे हुए है धन्यवाद।

वो द्वारिका अः दरवाज़ा है।